बहुत बड़ा-बड़ा है और बगल में ब्रिज है नीचे उह पानी है पानी के ऊपर ही ब्रिज है।

कई तरह का है कई कलरफुल है।

गोपालगंज का सीन है।

नाव के ऊपड़ एक हो घर में लाल --

कोई पीछे बच्चे का देख रहा है है।

बहुत तरह का किताब है ऊपर वेदांता बुक सेंटर लिखा हुआ है।

चारों तरफ बहुत-बहुत दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है ।

दुकान में बहुत कई तरह के डिब्बे रखे हुए हैं गंजी है छोटे बच्चों बड़े बच्चों के लिए कपड़े हैं आदमी के लिए कपड़े हैं ।

पारक लोग दे रहा है बहुत सुंदर है छठ पर्व महान पर्व है।

रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी लिखा हुआ है। कॉफी का चित्र बना हुआ है। बगल मे होटल प्लस लिखा है और बहुत सारा सामान है अंदर मे -